बीच में है पीछे एक मकान है मकान पे हरा कलर --

सारा पानी है तालाब के आस-पास में बहोत सारे हरे-भरे झाड़ है।

माकन के अंदर एक लकड़ी की अलमारी है अलमारी पर सब सामान रखा हुआ है।

पास में कुछ सामान रखा हुआ --

स्टेट बँक का ए.टी.एम. है ए.टी.एम. का गेट बंद है गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद और काले --

मंदिर के पास में एक बड़ा झाड़ है।

पास में एक के ऊपर एक बहोत सारी बोरियाँ रखी हैं।

सिल्वर कलर का है मंदिर के अंदर एक प्रतिमा रखी हुईं है उसके पास में दो छोटी-छोटी प्रतिमाएं रखी हुई हैं।

गुलाबी कलर और सफ़ेद कलर करा हुवा है।

एक गेट दिख रहा है गेट के पास में एक हरा गलीचा है।

इसमें बहोत बड़ा समुद्र दिख रहा है समुद्र के ऊपर बहोत बड़ी जहाज दिख रही है जहाज के अंदर कुछ लोग बैठे हए हैं।